चारपाई के पीछे एक गड्ढा दिख रहा है गड्ढा के पीछे ईंट दिख रही है ईंट के पीछे कुछ पाईपे रखी हैं वो भी--

और ऊपर पे दिखा सेवंटी फाइव परसेंट एडवांस जमा होने पर ही कार्य किया जाएगा यह भी दिखाई दे रहा है।

और हाथ पोछने का रखा दिखाई दे रहा है बाजू में बैठे एक व्यक्ति दिखाई दे रहे है सामने रखा--

यह एक रोड दिखाई दे रही है जहां से एक ऑटो --

तीन लोग दिखाई दे रहे हैं सामने में लगी लाइटें दिखाई दे रही हैं।